अकाउंट सेटिंग्स और जी मेल अकाउंट को कन्फिगर करने पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक ई मेल अकाउंट में नये फोल्डर्स कैसे जोड़ें
मैसेजेस को खोजने के लिए एडवांस्ड फिल्टर्स कैसे निर्धारित करें
मैसेज फिल्टर्स को व्यवस्थित कैसे करें
हम साथ ही सीखेंगे याहू अकाउंट को खुद से कन्फिगर करना
विभिन्न ई मेल अकाउंट्स की व्यवस्था करना
एक मेल अकाउंट के लिए अकाउंट सेटिंग्स को बदलना
एक ई मेल अकाउंट को डिलीट करना
यहाँ हम उबंटू 1204 पर मोज़िला थंडरबर्ड 1301 इस्तेमाल कर रहे हैं
लॉन्चर में थंडरबर्ड आइकन पर क्लिक करें
थंडरबर्ड विंडो खुलती है
इस अकाउंट में एक और फोल्डर जोड़ें
बाएँ पैनल से अकाउंट स्टूसरोन एटी जीमेल डॉट कॉम चुनें
स्टूसरोन एटी जीमेल डॉट कॉम पर दायाँ क्लिक करें और न्यू फोल्डर चुनें
न्यू फोल्डर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
नामे फील्ड में इम्पोर्टेंट मेल्स प्रविष्ट करें
क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करें
फोल्डर बन गया है
अब आप ज़रूरी मेलों को इनबॉक्स से इस फोल्डर में स्थानांतरित कर सकते हैं
इस मेल को चुनकर इनबॉक्स से इम्पोर्टेंट मेल्स फोल्डर में ड्रैग और ड्रॉप करते हैं
अब विभिन्न फिल्टर ऑप्शन्स का इस्तेमाल करके मैसेजेस को खोज सकते हैं
अब बाएँ पैनल से अकाउंट STUSERONEgmail डॉट कॉम चुनें
दाएँ पैनल में एडवांस्ड फीचर्स के नीचे सर्च मेसेजेज पर क्लिक करें
सर्च मेसेजेज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
मैसेजेस को खोजने के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स का इस्तेमाल करें
डिफॉल्ट रूप से मैच अल्ल ओएफ थे फॉलोइंग ऑप्शन चुनित है
डिफॉल्ट रूप से सब्जेक्ट और कंटेन्स भी चुनित हैं
अगले फील्ड में टेन इंटरेस्टिंग टाइप करें
सर्च पर क्लिक करें
मैसेज जो सब्जेक्ट नाम से मेल खाते हैं वह प्रदर्शित हैं
आप इन खोजों को एक फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
मैसेज को तिथि से खोजें और उन्हें एक फोल्डर में सेव करें
चलिए यह डायलॉग बॉक्स चुनते हैं
इस मेल अकाउंट के लिए एक नया फिल्टर बनाते हैं
फिल्टर एक नियम है जिसे आप अपने मेल बॉक्स के मैसेजेस को क्रमबद्ध करने के लिए लागू कर सकते हैं
यहाँ हम सब्जेक्ट थंडरबर्ड वाले सभी मैसेजेस को इम्पोर्टेंट मेल्स फोल्डर में स्थानांतरित करेंगे
बाएं पैनल से अकाउंट TUSERONEgmail डॉट कॉम चुनें
एडवांस्ड फीचर्स में मैनेज मेसेज फिल्टर्स पर क्लिक करें
मेसेज फिल्टर्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
न्यू टैब पर क्लिक करें
फिल्टर रूल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
फिल्टर नामे फील्ड में सब्जेक्ट थंडरबर्ड प्रविष्ट करें
फिर से फिल्टर को निर्धारित करने के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स चुनें
डिफॉल्ट रूप से मैच अल्ल ओएफ थे फॉलोइंग ऑप्शन चुनित है
डिफॉल्ट रूप से सब्जेक्ट और कंटेन्स भी चुनित हैं
अगले फील्ड में थंडरबर्ड टाइप करें
फिर परफॉर्म ठेसे एक्शन्स फील्ड में ऑप्शन को मूव मेसेज टो में बदलें
अगले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें ब्राउज़ करें और फोल्डर इम्पोर्टेंट मेल्स चुनें
ओक पर क्लिक करें
मेसेज फिल्टर्स डायलॉग बॉक्स में फिल्टर प्रदर्शित होता है
रुन नोव पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स को बंद करें
अब इम्पोर्टेंट मेल्स फोल्डर पर क्लिक करें
ध्यान दें थंडरबर्ड सब्जेक्ट के साथ मेल्स इस फोल्डर में स्थानांतरित हो गये हैं
आप थंडरबर्ड से विभिन्न ई मेल अकाउंट्स का संचालन कर सकते हैं
इसका मतलब थंडरबर्ड का इस्तेमाल करके आप न केवल अपने जी मेल बल्कि याहू या कोई अन्य मेल अकाउंट से मेल्स प्राप्त भेज और व्यवस्थित कर सकते हैं
जैसा कि आप जानते हैं जी मेल अकाउंट्स थंडरबर्ड के द्वारा स्वतः ही कन्फिगर हो जाते हैं
दूसरे अकाउंट्स को खुद से कन्फिगर करना होगा
थंडरबर्ड के ज़रिये याहू अकाउंट STUSERTWOyahoo डॉट इन को कन्फिगर करें
मैंने याहू अकाउंट में पॉप को पहले से ही सक्षम किया है
मैंने यह कैसे किया
सबसे पहले मैंने अपने याहू अकाउंट में लॉगिन किया
फिर एक नया ब्राउज़र खोला और एड्रेस बार में wwwyahooin टाइप किया
अब yahooइन में यूज़रनेम स्टूसर्टवो और फिर पासवर्ड प्रविष्ट करें
ऊपर बाएँ कोने पर आप्शंस और मैल आप्शंस पर क्लिक करें
बाएँ पैनल पर पॉप एंड फॉरवर्डिंग पर क्लिक करें
एक्सेस याहू मैल वीआईए पॉप चुनें
क्लोज टैब पर क्लिक करें
सेव चेंजों मैसेज के साथ एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
सेव पर क्लिक करें
अब याहू से लॉग आउट करें और ब्राउजर बंद करें
अब दायें पैनल से अकाउंट्स के नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें
मैल अकाउंट सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
अब नेम के लिए यूजर्टवो प्रविष्ट करें
अगला ई मेल ऐड्रेस में याहू आईडी STUSERTWOYAHOOIN प्रविष्ट करें
फिर पासवर्ड टाइप करें
कंटीन्यू पर क्लिक करें
मैल अकाउंट सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
इनकमिंग सर्वर नामे फील्ड में पॉप3 चुनें और सर्वर होस्टनेम के लिए पॉप डॉट मैल डॉट याहू डॉट कॉम प्रविष्ट करें
हम पॉप3 चुनते हैं क्योंकि हम मेलों को ऑफलाइन जाँचना चाहते हैं और इसलिए सभी मेलों को अपने लोकल कम्प्यूटर में डाउनलोड करें
पोर्ट के लिए इनकमिंग फील्ड में याहू के लिए पोर्ट नम्बर प्रविष्ट करें जोकि 110 है
एसएसएल ड्रॉप डाउन में स्टार्टटल्स चुनें
ऑथेंटिकेशन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और नॉर्मल पासवर्ड चुनें
आउटगोइंग फील्ड में सर्वर नेम एसएमटीपी चुनें और सर्वर होस्टनेम के लिए smtpmailyahooकॉम प्रविष्ट करें
पोर्ट के लिए याहू का पोर्ट नम्बर प्रविष्ट करें जो 465 है
एसएसएल ड्रॉप डाउन में sslटीएलएस चुनें
ऑथेंटिकेशन ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें और नॉर्मल पासवर्ड चुनें
यूजर नामे फील्ड में नाम स्टूसर्टवो प्रविष्ट करें
क्रिएट अकाउंट बटन सक्षम है
क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें
याहू अकाउंट कन्फिगर हो गया है
आपके इंटरनेट कनेक्शन के अनुसार यह कुछ समय ले सकता है
ध्यान दें थंडरबर्ड विंडो में दायाँ पैनल अब याहू अकाउंट दर्शा रहा है
इनबॉक्स पर क्लिक करें
याहू अकाउंट के सभी मेल्स यहाँ पर डाउनलोड हो गये हैं
आप थंडरबर्ड का इस्तेमाल याहू और जी मेल अकाउंट्स से प्राप्त मैसेजेस को न केवल देखने के लिए बल्कि एक साथ दोनों अकाउंटों को व्यवस्थित करने के लिए भी कर सकते हैं
अब प्रेफरेंस सेटिंग्स को देखते हैं जो थंडरबर्ड में ई मेल अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हैं
हो सकता है आप थंडरबर्ड से भेजे गये मेल्स की एक कॉपी जी मेल अकाउंट में संचित करना चाहें
जब उत्तर दें तो मूल प्रति को दुहरा लें
जंक मैसेजेस को पहचानें या कुछ मैसेजेस को डाउनलोड न करें यदि आपके कम्प्यूटर पर डिस्क स्पेस भरा हो
बाएँ पैनल से जीमेल अकाउंट चुनें
थंडरबर्ड मैल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
दायें पैनल से अकाउंट्स के नीचे व्यू सेटिंग्स फोर थिस अकाउंट पर क्लिक करें
अकाउंट सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बाएँ पैनल में फिर जीमेल अकाउंट चुनें
अब सर्वर सेटिंग्स पर क्लिक करें
सर्वर सेटिंग्स दायें पैनल में प्रदर्शित होता है
चेक फोर न्यू मेसेजेज एवरी चेक बॉक्स में 20 प्रविष्ट करें
थंडरबर्ड अब प्रत्येक 20 मिनट्स पर मैसेजेस को जाँचेगा
एम्पटी ट्रैश ओन एक्सिट बॉक्स को चेक करें
जब भी आप थंडरबर्ड से बहार जायेंगे ट्रैश फोल्डर के सभी मैसेज डिलीट हो जायेंगे
इसी प्रकार आप अपनी सर्वर सेटिंग्स को कस्टमाइज अपनी रूचि के अनुसार कर सकते हैं
इसी तरह हम इनके लिए भी ऑप्शन्स निर्धारित कर सकते हैं मेल्स की प्रति बनाने के लिए ड्राफ्ट मैसेजेस को सेव करने के लिए सेव किये हुए मैसेजेस का स्थान बदलने के लिए
बाएँ पैनल से कॉपीज एंड फोल्डर्स पर क्लिक करें
कॉपीज एंड फोल्डर्स डायलॉग बॉक्स दायें पैनल पर प्रदर्शित होता है
इन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन्स को वैसे ही रखते हैं जैसे यह हैं
ध्यान दें प्लेस आ कॉपी इन और सेंट फोल्डर ओन ऑप्शन पहले से ही चुनित हैं
डिस्क स्पेस को सेव करने के ऑप्शन्स को निर्धारित करने के लिए बाएँ पैनल से डिस्क स्पेस चुनें
अब दायें पैनल में आप टो सेव डिस्क स्पेस डीओ नोट डाउनलोड ऑप्शन देखेंगे
मेसेजेज लार्जर थान बॉक्स को चेक करें
अब केबी फील्ड में 60 प्रविष्ट करें
थंडरबर्ड 60केबी से बड़े मैसेजेस को डाउनलोड नहीं करेगा
थंडरबर्ड की एक और लाभदायक विशेषता है जंक मैसेजेस को पहचानना
आप थंडरबर्ड को जंक और गैर जंक मैसेजेस को पहचानने के लिए सिखा सकते हैं
यह करने के लिए आपको सबसे पहले जंक सेटिंग्स निर्धारित करनी चाहिए और फिर मैसेजेस को जंक जंक और non जंक गैर जंक के लिए चिह्नित करें
शुरू में आपको प्रत्येक मेल के लिए जंक मेल बटन पर क्लिक करके जंक मैसेज खुद ही पहचानना होगा
समय के साथ आपके चुनावों पर आधारित थंडरबर्ड खुद से ही जंक मैसेजेस को पहचान लेगा
और उनको जंक फोल्डर में स्थानांतरित करेगा
अकाउंट सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में बाएँ पैनल से जंक सेटिंग्स पर क्लिक करें
दायें पैनल पर जंक सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
ध्यान दें कि इनेबल एडेप्टिव जंक मैल कंट्रोल्स फोर थिस अकाउंट बॉक्स डिफ़ॉल्ट रूप से चुनित है
डीओ नोट मार्क मैल एएस जंक इफ थे सेंडर इस इन सूची के अंदर सभी ऑप्शन्स को चेक करें
मूव न्यू जंक मेसेज टो फील्ड को चुनें और जंक फोल्डर ओन ऑप्शन को चुनें
ओक पर क्लिक करें
अब इनबॉक्स पर क्लिक करें और पहला मेल चुनें
मेल की विषय वस्तु नीचे पैनल में प्रदर्शित होती है
जंक आइकन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि हेडर जंक मैल प्रदर्शित होता है
इसी प्रकार से आप अन्य प्रेफरेंस टूल भी निर्धारित कर सकते हैं
अंततः क्या हम मेल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं जिसे हमने थंडरबर्ड में कन्फिगर किया है160
हाँ हम कर सकते हैं
बाएँ पैनल से अकाउंट STUSERONEgmail डॉट कॉम चुनें
दायें पैनल से अकाउंट्स के नीचे व्यू सेटिंग्स फोर थिस अकाउंट को चुनें
अकाउंट सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
नीचे बाएँ कोने से अकाउंट एक्शन्स पर क्लिक करें और फिर रिमूव अकाउंट पर क्लिक करें
एक चेतावनी सूचना प्रदर्शित होती है
यदि हम ओक पर क्लिक करेंगे अकाउंट डिलीट हो जाएगा
हालाँकि इस ट्यूटोरियल के हेतु हम इस अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे
अतः हम कैंसेल पर क्लिक करेंगे
चलिए इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं
याद रखें जब आप एक ई मेल अकाउंट डिलीट करते हैं तो उस ई मेल अकाउंट के अनुरूप सभी फोल्डर्स और मेल्स थंडरबर्ड से डिलीट हो जायेंगे
विस्तृत सूचना मोज़िला थंडरबर्ड विंडो के बाएँ पैनल में अभी भी प्रदर्शित हो सकती है
हालाँकि जब आप फिर से लॉगिन करेंगे वह प्रदर्शित नहीं होगी
इसी के साथ मोज़िला थंडरबर्ड 1002 की समाप्ति पर आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे एक ई मेल अकाउंट में नये फोल्डर जोड़ें
मैसेजेस को खोजने के लिए एडवांस्ड फिल्टर्स निर्धारित करें
मैसेज फिल्टर्स को व्यवस्थित करें
आपने यह भी सीखा कि कैसे याहू अकाउंट को खुद से कन्फिगर करें
विविध ई मेल अकाउंट्स को व्यवस्थित करें
एक मेल अकाउंट के लिए अकाउंट सेटिंग्स को बदलें और एक ई मेल अकाउंट डिलीट करें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
खुद से एक ई मेल अकाउंट निर्धारित करें
अकाउंट की सेटिंग्स बदलें
मैसेजेस को आर्काइव करने के लिए प्रीफरेंस निर्धारित करें
प्रीफ्रेंसेस को जंक सेटिंग्स में बदलें
एक ई मेल अकाउंट डिलीट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro आईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद